ये मस्जिद है जिसमें चार गुबज लगे हुए है चार गुबजो के ऊपरी हिस्से में हरे कॉलर से पुता गया हैऔर ये एक बड़ी सी गुमबज दिखाई दे रही है।

और यहां सामने से रास्ता भी दिखाई दे रहा है और साइड मे बहुत हरे कॉलर के पेड़ लगे हुए है आसमान दिखाइ दे रहा है और--

बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे है और सड़क के किनारे हरे कलर की घास लगी हुई दिखाई दे रही है और आसमान नज़र--

टाईम है और कुछ लाइटे जल रही है यहाँ पेट्रोल पंप है जिसके अंदर बहुत सारी लाइटे जल रही है।

एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ रही है एक वाइट कलर मे है और एक पिंक कलर मे है और यहाँ एक चारो और बाउंड्री वाल बनी हुई है जिसका पिंक कलर का दरवाज़ा गेट लगा हुआ है यहाँ कुछ बाइके खड़ी हुई है कुछ लोग खड़े--

और यहाँ एक रस्ता भी नज़र आ रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग कुछ ब्लैक कलर का बोर्ड भी लग--

एक बड़ा सा स्थल भी दिखाई दे रहा है और साईड मे एक पिंक कलर से एक यात्री प्रतीक्षा लेने गया है।

ये दिन का टाइम है और ऑफिस के समाने एक ओडा हैजो की हरे कॉलर की लगी हुए है।

और कही जा रहे है कुछ बाइके खड़ी हुई है कुछ साइकिले खड़ी हुई है और एक भी बेच रहा है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।